बाहर एक विष्णु जी की मूर्ति दिख रही है साथ ही हमें एक शेर की मूर्ति भी यहां पर--

पर हमें कुछ मेडल टंगे हुए दिख रहे हैं।

उनके हाथ में पानी की बोतलें है।

हम एक बड़े से केले को देख रहे हैं।

बहोत सारी जलेबियां नजर आ रही हैं।

लोहे की एक नीले रंग की गेट बाहर लगी है।

सफेद रंग के यहां पर बहुत से रैक नजर आ रही हैं।

कुछ चश्मे कुछ डिब्बे नजर आ रहे हैं।

कुछ ट्रके दिखाई दे रही हैं।

कुछ बड़े पेड़ भी नज़र आ रहे है शायद यहाँ हमें कुछ बिजली की खंबे नज़र आ र --

हम यहां सामने एक बड़े से हॉल को देख रहे हैं।

जिन पर हमे कुछ लोग एक्साइज करते नजर आ रहे हैं।

साथि ही यहां हमें कुछ बड़ी बोरियां दिखाई दे रही है।

यहां हम सामने एक कमरे को देख रहे हैं।

कुछ मुर्तियां लगी हुई है साथ कुछ छोटे पौधे दिखाई दे रहे है।

हम कुछ लोगों को आदिवासी वेशभूषा में देख रहे हैं।

साथ ही यहां पर कुछ झूले भी लगे हुएं--

हम यहां सामने एक बड़ी सी हॉल को देख रहे हैं।

साथ ही यहां पर बहुत से लोगों की भीड़ नजर आ रही है।